यहां एक आदमी दिखाई दे रहा है।

हर रूम का दरवाजा में फूल से बनाया हुआ माला लगाया हुआ है।

यह जगह पूरे ईंटे से बना हुआ है।

गायों के पीछे एक दीवार है।

रूम का आगे दो चेयर और दो टेबल दिखाई दे रहा है।

शेल्फ का अंदर बहुत सारा सामान रखे हैं।

रुम में दो बड़ा सोफा और चार कुसन चेयर दिखाई दे रहा है।

दुकान के ऊपर एक बैनर लगा के है बैनर पर स्टार सीमेंट लिख के है।

दुकान का आगे एक टेबल है।